तैयारी चल रही है ऊपर में सजने संवरने की--

पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक गाय जो कि काले रंग की है वो आगे खड़ी हुई।

होटल का नाम होटल गेटवे जोकि कर्नाटका में है।

लड़कियां लड़के के और बच्चों के--